और कुछ लोग मच्छी को देख रहे हैं और कुछ लोग मच्छी को खरीद रहे हैं यहां पर --

और ऊपर काले रंग के कुछ पंखे घूमते हुए दिख रहें है और सफ़ेद रंग के बत्तियां भी जल रही हैं कांच के दीवार भी है।

यहां पर एक बोहोत बड़ी सी इमारत के पास कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं और यहां पर सादा अस्पताल लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति अ- खड़ा हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति ने अपने हाथ को एक कोई सामान पर रखा हुआ है।

यहां एक ने हरे रंग का और एक ने नीले रंग के वस्तु पहन रखे है।

इस चित्र में एक इमारत का चित्र दिखाया गया है। इमारत पर ऊपर के साइड ह नीले रंग के बहुत सारे बत्तियां जल रही हैं।

इस तस्वीर में लाल रंग की एक दीवार जैसी बनी हुई दिख रही है और यहाँ पर एक --

इस तस्वीर में एक बड़ा सा इमारत नज़र आ रहा है| इमारत पर पिला रंग किया गया है| इमारत के बाहर कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सफेद रंग की गोल इमारत दिख रही है।